एक मंदिर है भोले नाथ का मंदिर जो बहोत ही सुंदर बहोत ही अच्छे तरह से बनाए गए हैं मंदिर।

एक कोचिंग सेंटर है जहां पर बच्चे सब पढ़ने के लिए आते हैं कोचिंग सेंटर में बहुत ही बड़ा कोचिंग सेंटर है बहुत ही अच्छी तरह से यहां पढ़ाई होते हैं बहुत ही नामी है ये कोचिंग सेंटर दूर-दूर से यहां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं।